ब्लैक कलर का बहुत सारी चेयर लगे दिख रहे हैं एक पंखा दिख रहा है।

एक वाइट कलर का कार पार्क किया गया है जिसके बगल में एक लोग खड़े हैं।

पीछे एक सड़क में कुछ बाइक्स दिख रहा है जिसमें एक लेडीज और एक जेंस चढ़ा हुआ है।

बहुत सारे टोकरी दिख रहे हैं जो रेड कलर और ब्लू कलर के हैं।

जहां एक घड़ी लड़का दिखाई दे रहा है बहोत सारे पंखे दिखाई दे रहे हैं।

सामने एक लड़का खड़ा जो पीला कलर का टी शर्ट और ब्लैक कलर का पेंट पहना हुआ--

जिसमें डेल और एच_पी कंपनी का कंप्यूटर रखा हुआ है।

जहां बहुत सारे जूता चप्पल रखे गए हैं शीशा में एक बिजली का खंभा दिख रहा है।

सामने एक बहुत बड़ा मैदान है जो हरा भरा है।

सामने एक टेबुल दिखाई दे रहा है। जिसके ऊपर एक प्लास्टिक में पैक रबड़ से बांधा हुआ बैग धरा हुआ है।

जहां बहुत सारे बच्चे डांस करते दिखाई दे रहे हैं। जो वाइट कलर का टी सर्ट पहना हुआ है और एक ब्लू कलर का जींस पहना हुआ है।

बगल में एक और लोग दिखाई दे रहे हैं जहां नल लगा --

नीचे बहुत सारे मोटरसाइकल खड़ा दिखाई दे रहे हैं। जिसमें हेलमेट लगा हुआ है।